यहाँ तीन पिलर है | एक पिलर में भुट्टा का फ़ोटो बना हुआ है दूसरे पिलर में फल की फ़ोटो बना हुआ है तीसरे पिलर में सब्जी का फ़ोटो लगा हुआ है ऊपर मे अच्छी खासी कुछ लिखा है।

ज्यादा से ज्यादा यहां बिल्डिंग है। यहां तीन बिल्डिंग वहां नीचे में एक नीचे बिल्डिंग भी है। यह हरे-भरे पौधे हैं। यह रोड बहोत साफ है।

एक आदमी खड़ा है। यह सादे रंग का स्टेचू बना हुआ है आदमी का।

हरे-भरे घाँस हैं। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ये शादी हाल में बहोत सारे आदमी हैं।

यहाँ पे आइसक्रीम का एक बोहोत बड़ा जगह है। यहाँ पे आइसक्रीम का पोस्टर भी लगा हुआ --